एक बैठना के लिए वो पिसल पट्टी लगी हुई हैं जिसमे ग्रास लगा हुआ है साइड से पानी भी दिख रहा हैं पेड़ भी दिख रहे ग्रीन कलर कि ग्रास है।

यहाँ बहोत सारे मजदूर खड़े हुए है जो कंट्रक्शन कर रहे है लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ है और शिखे बनी हुई है ब्लू कलर का कुछ पड़ा है कंट्रक्शन कर रहा है।

लकड़ियों के साथ और साइड से ब्लू कलर का बाउल पड़ा है रेड कलर का टिशर्ट पहनी है इसने और चार भैया लोग है और--

हर दो दो लोग शीप को चल रहे है और बोट को चल रहे है और ऊपर से आसमान बना हुआ है और--

कुछ बच्चे खड़े हुए हैं जो पेड़ो के सामने खड़े हुए हैं और वह लोग कुछ खेल रहे हैं मिट्टी में और पेड़ पेड़ भी झाड़िया भी हैं और और साइड से एक लम्बी सी टावर दिख रहा हैं और एक--

एक वाटरपार्क है जिसमे स्लाइड्स दिख रही है और बहुत सारे लोग उस वाटरपार्क में खड़े हुए है कुछ नहाते हुए दिख रहे है और पीछे से पूरे झाड़ ही झाड़ दिख रहे है।

पीछे से अ कुछ नाम लिखा हुआ है जो शो नहीं हो रहा हैं और पीछे से झाड़ लगे हुए हैं और लम्बे लम्बे पेड़ भी हैं तो आप देख सक--